बिकते हैं मैन्युफैक्चर होते हैं ये सब वहाँ के एम्पलॉय खड़े हुए है।

इसमें इंटेयर भी बहुत अच्छा दिख रहा है आगे--

वहां पर सब सोफे लगा हुआ है वहां पे एक फ्रेम भी लगा हुआ है।

और इसके अंदर डम्बल मशीन चेस्ट लैग --

और ये बड़े ग्राउंड में है।

ये एक शादी का कार्यक्रम हो रहा है और उसके अंदर एक ड्रोन भी है।

कि इसमें फोटो खिचा रहा है और उसके पीछे --